एक मकान है मकान काफी बड़ा है मकान सफेद कलर का उसमे काफी सारे खिड़किया है मकान के बगल मे एक कार है कार लाल कलर का कार के बगल मे काफी सारे पैर -पौधे है जो हरे-भरे है काफी बड़े है ।

पीछे साइड काफी सारे लोग खड़े हुए है जो कुछ सामान खदिर रहे है जो पीले कलर का दिखाई दे रहे है उसके बगल मे लोहे का एक दीवाल है ।

जो गोल्डन का है उसके बगल मे एक पेड़ है जो हरा-भरा है और मीडियम साइज का है ।

एक पानी है यहाँ पे काफी सारे पानी है पानी के बगल मे ब्रिज है ब्रिज ट्रेन का है जो लोहे का बना हुआ है उसमे काफी सारे पिलर पिलर जो है सीनमेन्ट के बने हुए है ।

जिस हाथ मे कुछ रखा हुआ है उसके बगल मे रास्ता है रास्ते के बीचों बीच एक खंभा है जो खंभे लोहे का उसके बगल मे काफी लोग खड़े हुए है उसके पीछे पेड़ है जो हरियर कलर का है और काफी बड़ा है ।

रास्ता है रास्ते के ऊपर कार रखा हुआ है जो सफेद कलर के और टायर ब्लैक कलर एक रास्ते मे एक लड़का भी बैठा हुआ हैउसके बगल मे एक इन्सान खड़ा हु ---

उसके पीछे लकड़ी का एक प्लश का सिम्बल है उसके पीछे दीवाल है दीवाल मे काफी पुराना पैंट है उसके बगल मे बोर्ड है बोर्ड सफेद कलर उसके बगल मे एक लाल कलर का एक केन रखा हुआ है ।

टैंक काली कलर का है उसके पीछे वायर वाला खम्बा है खम्बा में वायर लगा हुआ है खम्बे के निचे एक साइड पेड़ है जो हरा भरा काफी बड़ा है।

काफी सारे गमले भी रखे हुए है जो हर कलर के गमले गमले मे फूल भी लगे है गमले मे लाल कलर का है पीले कलर का है ऑरेंज कलर का है।

एक तालाब है तलाब मे काफी सारे पानी है उसके बगल मे एक और छोटा सा तालाब है उसके बगल मे एक रास्ता है जाने के लिए जिसमे खुरसी अगल-बगल मे पेड़-पौधे जो काफी बड़े-बड़े हरे-भरे हैं ।

बगल में नदी है नदी में पानी है उसके बगल में एक इंसान बैठे है उसके बगल में एक ब्रिज है ब्रिज काफी बड़ा है उसमे दो पिलर भी है उसके पीछे सिर्फ मकान है।

आप एक टीचर है जो पढ़ा रहे है बच्चों को बच्चे अगल-बगल बैठे हुए हैं जो टीचर को देख रहे हैं जो बच्चे सभी कलर के टीशन पहने हुए हैं।